ग्रीन कलर के पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे। आसमान भी दिखाई दे रहा। पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग नजर आ रही है और बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा गाड़ी को ड्राइव करता हुआ दिखाई दे रहा है।

आसमान भी दिखाई दे रहा है। देखने मै बहुत अच्छा लग रहा है।